यहाँ और साथ में खड़े है और यहाँ पर है।

यहां पर बहुत सारे महिलाएं इतने मशरूफ है।

और यहाँ पर लोहे की बनी हुई है ।

ये एक बना दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

वैद रंग की शर्ट और काले कट पहने हुए लड़का जा रहा है।

यहां पर हरियाली भी बहुत ज्यादा है और ये बर्फ का मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और यहां और न।

पौधे और एक बोतल में माचिस भी दिखाई दे रही हैं जिसका रंग।

का जाली का गेट लगा हुआ है उसका रंग सफेद है।